एक व्यक्ति प्लेटफार्म पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा--

शॉप का नाम वेदांत बुक्स वर्ल्ड दिखाई दे रहा--

दो व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में मुझे बोर्ड पर लिखा न्यू कटनी जंक्शन दिख रहा है।

दिखाई दे रहे हैं चित्र में मुझे कई सारी पेड़-पौधे गार्डनिंग दिखाई दे रही है।